जोकी जहां पर दूध मिलता है जूस मिलता है और सभी तरह के आइटम मिलते हैं।

इस तस्वीर में जो है एक क्रोकोडाइल है और क्रोकोडाइल एक बहुत बड़ा जीव होता है समुंद्र का और इसको समुद्र के बाहर ये बैठा है।

और इसमें भैंस जो है काफी बड़ी है।

और मुर्गा जो है ये लड़ने वाला मुर्गा है और ये तीन मुर्गे है लड़ने वाले।

और ये किसी ग्रामीण इलाके में है और ये टप के पास खड़े हैं इसके पास जो है वो --

अ मकान के बाहर जो है गेरील लगी है। मकान बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ये हिन्दू धरम --

और इ बौद्ध के मानने वालों की मंदिर है इसमें गेट जो है इसका ये गेट नंबर चार हैं।

और इनके साथ में जो है इनकी मंगेतर राधा जी है और राधा जी से जो किशन जी थे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे।

यज्ञ और हवन किया जाता है और बहुत ही अच्छी तरह से वो --

ये जो तस्वीर है ये किराना स्टोर की है जिस पर किराने का सभी सामान मिलता है।

ये सब्जियां काफी खूबसूरत हैं इसमें गोबी है --

टमाटर है धनिया है लहसुन है और --

ये दुकान है ये किराने की दुकान है इसमें --

पारले जी और काफी तरह के आइटम रखे हैं।

यह जो है यह स्टेडियम की --

कि जो है बोहोत से झूले लगे हुए हैं। अ पार्क के दूसरे साइड --

दुकान का रहता है वो होती है किताब की दुकान उसके बाद रहती है ड्रेस की दुकान।

ब्यूटी सैलून और मेकअप पार्लर जो है। ये महिलाओं का है।